हमारे लिए यहा पर एक गाय दिख रही है जो की वो घाँस चर रही है जो की वो करिया कलर की है जो की वो खूबसूरत नहीं लग रही हैं।

गाजर भी दिख रही और यहां पर भींडी भी दिख रही है जो की खूबसूरत लग रही दुकान यहां पर तबेला भी दिख रही है और ये दुकान हरी भरी दिख रही है और ये खूबसूरत लग रही हैं ।

एक बेच रहा है एक खरीद रहा है यहाँ पर मछली खाने में बहोत स्वादिष्ट लग रही है और यहाँ पर आसपास भी बहोत पेड़-पौधे रख रहे है और यहाँ पर आसपास भी बहोत पेड़-पौधे रख रहे है यहाँ पर गंदगी बहोत धरी हुई है और पीले कलर कैन पे धरी हुए है।